java में parameterized constructor पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
parametrized constructor के बारे में
और parameterized constructor को बनाना
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए
eclipse का उपयोग करके java में default constructor कैसे बनाएँ
यदि नहीं तो संबंधित tutorials के लिए दिखाई गई हमारी website पर जाएँ http:// www spokentutorial org
parameterized constructor क्या है
constructor जिसमें पैरामीटर होता parameterized constructor कहलाता है
इसमें एक या एकसे अधिक पैरामीटर हो सकते हैं
अब parameterized constructor बनाएँ
अतः eclipse में मेरे पास student java file है
हमने पिछले tutorial में यह file बनाई है
अब हम constructor में variables को उनकी default value देंगे
अतः roll _ number is equal to zero ten के बजाय
और name is equal to null raman के बजाय
फिर type करें system dot out dot println i am a default constructor
अतः हमने बिना पैरामीटर के constructor बनाया है
java में इस तरह के constructor को default constructor भी कहा java है
अब हम अन्य constructor बनायेंगे
अतः type करें student parentheses
parenthesis में int the _ roll _ number comma string the _ name
अतः हमने क्या किया है constructor को parameters के साथ घोषित किया है
constructor का name student जो class का name है
parenthesis में हमने constructor के लिए दो parameters दिए हैं
हम constructor के लिए कितने भी parameters we सकते हैं
अब curly brackets में type करें
system dot out dot println i am a parameterized constructor
फिर roll _ number is equal to the _ roll _ number
और name is equal to the _ name
अतः हमने parameters के साथ constructor बनाया है
अब इस constructor को कॉल करें
अतः main method में type करें student stu2 equal to new student parentheses में 11 comma double quotes में raju
अब studentdetail method को कॉल करें
अतः type करें stu2 studentdetail
program को सेव और run करें
हम console पर output देखते हैं
default constructor पहले कॉल होता है
यह उनकी default values के लिए variables को इनिशीलाइज करता है
फिर parameterized constructor कॉल होता है
यह उन values के लिए variables इनिशीलाइज करता है जो arguments के रूप में passed किये हैं
जो 11 और raju है
अब देखते हैं कि parametrized constructor कैसे काम करता है
जब हम parameterized constructor को कॉल करते हैं हम इसमें दो values pass करते हैं
इन्हें arguments कहते हैं
value 11 को parameter the _ roll _ number से copied करते हैं
value raju को parameter the _ name से copied करते हैं
फिर the _ roll _ number की value roll _ number में निर्दिष्ट करते हैं
और the _ name की value name में निर्दिष्ट करते हैं
इसलिए हम output 11 और raju देखते हैं
parameterised constructor को common करते समय सामान्य errors देखें
मानिए कि हम constructor के लिए एक single आर्ग्युमेंट्स pass करते हैं
अतः raju को हटाएँ
हम एक error पाते हैं यह बताता है कि the constructor student with parameter int is undefined
अतः arguments की संख्या parameters की संख्या से मिलनी चाहिए
यहाँ हम फिर से टाइप कर सकते हैं raju और error ठीक हो जाती है
वैकल्पिक रूप से हम single parameter के साथ अन्य constructor परिभाषित कर सकते हैं
इसे करें
अतः student paranthesis में int r number
curly brackets में type करें system dot out dot println
i am a constructor with a single parameter
फिर roll _ number is equal to r number
file को सेव करें
जब हम constructor को परिभाषित करते हैं तो हम देखते हैं कि error हल हो गयी है
program को run करें
console पर हम देखते हैं कि roll number की value 11 निर्दिष्ट है
जब name null है तब constructor केवल एक argument लेता है
अब अपने constructor को दो parameters के साथ वापस कॉल करें
अतः type करें student stu3 is equal to new student
11 comma raju
फिर stu3 dot studentdetail
मानिए कि यहाँ हम string के रूप में 11 पास कर रहे हैं अतः डबल कोट्स जोड़ें
हमें एक error मिलती है
यह बताता है किthe constructor student string commastring is undefined
अतः argument का data type उसके parameter के साथ मिलना चाहिए
अतः quotes को हटाएँ और file को so करें
अब हमें error नहीं दिख रही है
अतः program को run करें
output में हम तीन constructors देखते हैं
पहला एक default constructor है
दूसरा एक parameter के साथ constructor है
और यह तीसरा दो parameters के साथ constructor है
इस तरह हमने java में parameterised constructor बनाए
constructor क्यों
instance बनाते प्रत्येक समय class में variables इनिशीलाइज होना चाहिए
सभी variables इनिशीलाइज करना कठिन हो सकता है
अतः java objects को इनिशीलाइज करने की अनुमति देता है जब वे बनते हैं
यह constructor के उपयोग के माध्यम से किया जाता है
अतः इस tutorial में हमने सीखा
parameterized constructor को बनाना
parameterized constructor की कार्यक्षमता
और constructor के उपयोग के लाभ
स्वमूल्यांकन के लिए एक class employee बनाएँ
parameters की भिन्न संख्या के साथ constructors बनाएँ
spoken tutorial project के बारे में अधिक जानने के लिए
इस पर उपलब्ध video देखें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
spoken tutorial project team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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
अब हम इस tutorial के अंत में आ गये हैं
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद